इ सब्जी मंडी है। सब्जी-ओब्जी एक जगह सब्जी मंडी में मिलता है तो आसानी से सारी सब्जियां मिल जाता है और थोक में भी मिलता है और सस्ता भी मिलता है ठीक है। ऐसहीं जगह से सब्जी-ओब्जी लेना ओना भी चाहिए। लेकिन नहीं छोटे भी दुकान पर ध्यान रखना चाहिए तभी तो बढ़ेगा।